गार्डन जो है वो हरी कलर की घास लगी हुई है आसपास में रेलिंग भी बनी हुई है उपर नीला आसमान गया हुआ है उसमें कुछ और यहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई हैं देखने पर लग रहा है शाम का समय है।

यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है | काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है | बस भी है कार्स भी है कुछ बाइक्स भी है सामने एक बिल्डिंग भी बानी हुई है।

ऊपर लाइट लगी हुई है काफी प्रकार की लाइट है ऊपर से तार गई हुए हैं | बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी बड़ी है ऊपर की और आसमान है देखने पर लग रहा है की शाम का नजारा है | आस पास में कुछ टब भी लगे हुए है।

ओइजु लगी हुई है आजूबाजू में बहुत सारी घास लगी हुई है और कुछ पेरी से है।

यहां पर एक कार और एक वैन दिख रही हैं देखने पर लग रहा है वो जा रहे हैं एक लड़का भी खड़ा हुआ हैं जो सामने की ओर जा रहा हैं।

बहुत बड़ी दुकान है दुकान को देख कर लग रहा है कि यह कपड़ों की है और साड़ियों की दुकान है ये यह दुकान जो है इसमें डोल्स खड़ी हुई है तीन जो सड़ीया पहने हुए है और एक लेहेंगा पहना हुआ है यहां पर दो चेयर रखी हुई है जो काले कलर की है।

ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग है देखने पर लग रहा है कि कोई कॉलेज है नीचे की साइड मे एक बोर्ड लगा हुआ जिसमे माता लिखा गया है और गेट फाइव --

यह एक बहोत बड़ी दुकान हैं देखने पर लग रहा है यह कपड़ो की दुकान है कुछ कपड़े जो हैं पैक रखे है कुछ खुले हैं और यहा पर जमें हुए रखे गए है उपर की साइड मे एक ब्लैक कलर का पंखा हैं।